पिक्चर में बहोत सारे रिबार्स है ऐसा लगता है की कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है।

ये एक छोटी सी शॉप या फिर ढाबा कह सकते है उसकी पिक्चर लग रही है जिसमें कि--

वो मुर्गा भी किसी चीज को देख रहा है इसको देख के लगता है कि यह लोग बाहर के नजारे को देख रहे हैं इनके पास गमले भी लगे हुए --

या फिर ये एक मंदिर है मंदिर के पास का एक स्थल है।

बैंक का नाम हैं एच_डी_एफ_सी बैंक और साथ में ये कोई साउथ की लैंग्वेज में भी--

इस बैंक के बाहर लोग चल रहे हैं।

इसमें चेयर्स भी है तीन चेयर्स है जो कि पिंक कलर की है और काफी अच्छी लुक दे रही--

यहाँ पर एक पिक्चर है पता नहीं किसकी है।

इस दुकान में बहुत से प्रोडक्ट्स है जिसको मुंह पर लगा के कुछ भी बन सकते हैं इसकी पिक्चर काउंटर के पास से ली गई है।

इसमें दो लड़के नहा रहे हैं और काफी खुशी से नहा रहे हैं।

और इस एडिटेड पिक्चर में ये किसी फैक्ट्री की लग रही है और ये फैक्ट्री भी नहीं कुछ सी के साइड मै कुछ बोर्ड्स लग रही है।

एक लड़की जिसने की ब्लू टी शर्ट और ब्लू निक्कर पेहन रखा है।

यहां पर सारी नई मशीने लग रहे हैं और इसमें लोग भी काफी कम है मतलब की एक ही आदमी दिख रहा है।

यह एक केक है और यह चॉकलेटी केक है।

कुछ पूरा पूरा ऑरिओ चिपका दिया है और इसमें चॉकलेट्स है।

नीचले साइड कैफे के साइड में एक बाइक भी पार्क हुई है जिसका नंबर क्लियर नहीं दिख रहा--

कुछ कुछ जन्माष्टमी की तरह किया गया है।

ये पिक्चर एक दुकान की लग रही है या बाजार की है।

और ये साइकल्स बहोत आगे तक पार्क हुई है।

आदमी जो साइड में खड़ा है इसने नहीं खरीदी है।

यह एक सामने की तरफ एक मशीन है जिसके ऊपर बोटल रखी हुई है पानी की।